पेड़ भी लगे हुए हैं यहां पे और बहोत सारे पत्थर भी मुझे दिख रहे हैं।

पीछे मिर्ची लाइट भी दिख रही है।

इस फोटो में एक बड़ा सा पोस्टर है।

और घर का कलर है येलो और भी अलग अलग कलर के प्रिंट किए हुए हैं।

एक आदमी भी नजर आ रहा--

यहां पे अनेक और भी बहोत सारे चबूतरे दिख रहे हैं।

इसके आगे बहोत सारे पेड़ भी है जो हमें साफ साफ दिख रहे हैं।

इसमें बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

फोटो में मुझे दो तीन कुर्सियां नजर आ रही हैं।

सीसे में एक पुरुष भी नजर आ रहे है।

बैठने के लिए सीट भी रखी हुई--

उसके बगल में एक टेबल रखा हुआ है।

इस फोटो में दो तीन पुरुष नजर आ रहे--

यहां एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

बच्चे के सोने का पालना रखा हुआ है यहां पे।

इस फोटो में दीवार है जिसके ऊपर पंखा लगा हुआ है वाइट कलर का।

उसके पीछे एक बोर्ड है वाइट कलर का नजर आ रहा है।

एक पेड़ भी नजर आ रहा है।

फ्लोर हे जो बहोत ही अच्छे क्लीन है।